वहीं सारी खुर्सियाँ भी रखी हुई है जिनका रंग काला है नीचे एक फर्स भी बिछा हुआ है जिसका रंग हरा है।

बहुत बड़ी नदी है नदी का रंग नीला और हरा है वही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जिनका रंग हरा है।

एक सड़क है सड़क के किनारे इमारत है का रंग लाल और सफेद है वही बहुत सारी बस खड़ी है।

निचे फर्श है जिसका रंग काला और सफ़ेद है वही बहुत सारे लोग खड़े हुए है जो समान खरीद रहे है।

यहा एक सड़क है सड़क के किनारे इमारते है इमारतों का रंग काला और सफ़ेद है जिसमे बहुत सारी खिडकियां और दरवाजे है।

वही एक पूल भी है जिसपे से लोग उतर रहे हरे भरे पेड़ पौधे हैं ऊपर आसमान है जिसका रंग नीला और सफेद है।

एक सड़क है सड़क के किनारे रील पंछी है और बहुत सारी दुकान है और बहुत सारे लोग भी है।

और नीला आसमान है वही बहुत सारे पेड़-पौधे है जिनका रंग हरा है।

सड़क है सड़क के किनारे रेल पटरी है जिस पर रेल जा रही है जिनका रंग हरा पीला सफ़ेद और लाल है।

यहाँ सड़क है सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसके किनारे पर बहुत बड़े बड़े घर भी है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है और--